ये फोटो में हमको एक पेंडिल बना के दिखाई दे रहा है इस पेंडिल का अंदर में कुछ सिनेमा देख रहा है।

ये ग्लास शीशा वाला स्टील का है।

दुकान का बाहर में रेड कलर का कुछ छोटा सा दिखाई दे रहा है।

आसपास बहोत सारा पेर भी निकला हुआ है।

यही में पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

सामने मे जंगल जंगल भी बहोत सारा है।

इस तीनों घर का कलर ब्लू औरेंज और ग्रीन है।

ऊपर से लाइट का तार भी दो ठो लगाया गया है।

सामने में जंगल भी बहोत सारा निकला है।

ये किताब का कलर रेड कलर है।

पेड का पीछे में पेड़ पौधा भी बहुत सारा है।

इस घर के बाहर में फ्रूट्स बींस लिखा लिख के एक पोस्ट है।

ये घर का आधा कलर येलो कलर से मारा गया है और आधा कलर व्हाइट कलर से मारा है।

इसे अलग अलग कलर के कपड़ों से सजाया गया है।

वाइन शॉप का अंदर में बहुत सारा दारू रखा हुआ है।

सामने में चेयर भी रखा हुआ है।

और ये सिरी बैंबू से बनाया हुआ है।

आधा बम्बू जमीन में रखा हुआ है।

बहुत सारा श्रिंप पेर पतला पतला भी दिखाई दे रहा है।

आसपास पेड़ भी बहोत सारा है।

इथ मशीन का स्क्रीन ऑफ है।

साइड में हमको ऑरेंज कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।